यह तस्वीर राधा कृष्णा का लग रहा है।

यह तस्वीर चिल्ड्रेन्स पार्क की है जहां पे बहुत खूबसूरत नजारा है।